सी आकृति बनी हैं। बहोत सारे बोर्ड लगे हैं।

यह दोनों पेड़ पानी के कारण न नदी में डूबे हुए दिख रहे हैं।

सैलून की दुकान दिखाई दे रही हैं जिसके फर्श पे एक कार्पेट बिछा हुआ है। एक नीले कलर की छोटी डस्ट्बिन रखी हुई है।

बहोत सारे कलर की रंगोली रखी हुई है। रंगोली के साँचे रखे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं।

और एक पट्टी बनी है। उस पट्टी के ऊपर लकड़ी के बांस का बना हुआ कुछ समान रखा है।

और कुछ अ भवन के आजू बाजू कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है। सीढ़ियों पे दो लोग दिख रहे है।

ये एक दुकान दिखाई दे रही है। इस दुकान में बोहोत सारी लकड़ी की अलमारियां बनी हुई हैं।

कुछ जगह में हरी-हरी घास दिखाई दे रही है। पहाड़ के सामने बोहोत सारे सूखे-सूखे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

में एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक काउंटर बना हुआ है। काउंटर के ऊपर कांच लगा हुआ है।